और काफी सारे यहां पर जो है।

और दिन का समय हैं पानी दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर और तीन यहाँ पर ये दिखाई दे रहें हैं क्या कहते हैं इनको?

काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ एक बिल्डिंग है जो व्हाईट कलर की है बाहर एक ब्लू कलर का बोर्ड है सोलर प्लेट भी लगी हुई है।

इस फोटो में सामने जो है सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है नदी दिखाई दे रही है लंबी बहुत गहरी नदी--

इस फोटो में स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं रात का समय दिखाई दे रहा है।

सरस्वती माता का फोटो लगा है सामने--

और यहां पे काफी सारी खिड़कियां हैं बिल्डिंग में।

एक बड़ी सी नाव दिखाई दे रही है ठीक है। इसमें मतलब नेवी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक लड़का है जिसने ब्लैक कलर की जो है टी-शर्ट पेहनी हुई है ब्लैक कलर की जींस पहनी है और फोन ले रखा है हाथ में ब्लैक कलर का।

और यह लड़का शीशे में फोटो ले रहा है अपनी--

एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है दीवार पर--

वह लड़का बैठा हुआ है पीछे जो है ऐ_सी लगा हुआ है।

कुछ लोग और भी बैठे दिखाई दे रहे हैं और एक लड़का है जिसके हाथ में हेयर ड्रायर है।

इस फोटो में कुछ पौधे लगे हुए हैं फर्श पर हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ है एक लड़का है जिसने कुर्ता पहना हुआ है जो की ब्लू कलर का है।